और वहां पर चेयर्स का पूरी बिल्डिंग बना के रखी हुई है और वहां पर साइड में कुछ पौधे वगैरह उगे हुए है हमें नजर आ रहे हैं और वहां पर देख पा रहे हैं वहां पर क्वालिटी क्यों आइसक्रीम की कुछ पोस्टर वगैरा लगे हुए हैं ऊपर की तरफ भी कुछ स्टिकेर्स वगेरा--

सकते है कि यहां पर हमें कुछ दीवारें नजर आ रही है। और कुछ फ्लोट्स नजर आ रहे है। और सामने की तरफ भी उम एक और मैरून कलर की एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें दो मंजिला वह बनी हुई है।

पतली सी गली को देख पा रहे जिसमें दोनों तरफ एक अ मकान से बने हुए नजर आ रहे हैं अ कुछ दुकानें भी देखने को मिल रही है और हम देख पा रहे हैं कि अ यहां पे एक गेट हे--